इनके सामने बहुत सारे बोटल्स रखे हुए है एक बकेट टाइप की रखी हुई है।

ग्रीन कलर के पेड़-पोधे है ट्री है और ग्रे कलर का प्लेटफार्म है।

ये एक हवेली है जिसमे बहोत सारे जीने है कुछ मुर्तिये है और पूरी मटटी की मतलब सीमेंट की है और लोहे का गेट है एक

इस चित्र में एक कैफ़े हे बहोत सारी सीढ़ियें हे एक लोहे का शटर हे एक सफेद कलर का बोर्ड हे एक लाइट जल रही हे।

इस चित्र मे बहोत सारे दो घर बने हुए हैं बोहत सारे पेड़ है बोहत सारी मिट्टी हैऔर एक लोहे का खंबा है ।

इस चित्र में चार टेंट लगे हुए हैएक है।

बहुत सारी लाइटें हैं दो पीले और नीले कलर के बोर्ड हैं दो गुड्डे खड़े हुए दो मूर्तियाँ खड़ी है।